आरती बुक सेंटर यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहें--

जो नीले कलर का ड्रेस पहने हैं।

पंखा है लाइट वाली बोर्ड है।

सूर्य दिख रहा है टावर दिख रहा है।

कुछ लोग पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं।

पीछे गुलाबी कलर का कुछ लिखा हुआ है।

दुकान के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

गेट पे संतरे रंग का रिबन लगा हुआ हुआ है।

कुछ पौधे छोटे कुछ पौधे बड़े है।

बड़ी वड़ी कार और बाइक है।

इस तस्वीर में इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

तस्वीर में बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें अग्रहरी फ्रूट शॉप लिखा है।

इस तस्वीर में बहोत सारी खान की चीज--

इस तस्वीर में एक औरत चलती हुई दिखाई दे रही है।

पिलर खड़ा है आगे दीवार पर हरे कलर का कपड़ा लटका हुआ है।